विभिन्न प्रकार के केक रखे हुए हैं।

जिसमे दो सरकारी गाड़िया खड़ी हुई हैं।

ये चित्र विद्युत पॉवर प्लांट का है।

यह एक हाथी है। एक व्यक्ति उसके ऊपर बैठा खड़ा है।